मेरे सामने एक शोरूम दिखाई दे रहा है शोरूम मे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक एल_ई_डी भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक वॉश बेसिन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर बेड का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन रोज़ गार्डन के नाम से दिख रहा है यहां पर एम_सी दादरी लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे पेड़ भी दिख दे रहे है।

यहां पर कुछ डिब्बे भी रखे हुए दिखाई दे रे है यहां पर डिब्बों में बहोत सारे पत्थर का सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक स्टूल भी रखा हुआ--

ऊपर बहोत सारी कोल्डड्रिंक रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर पानी की बोतले भी रखी हुई दिखाई दे रही--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

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर ऐ ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर--

रोड दिखाई दे रहा है। रोड पर बहोत सारी मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर क्रेन का कलर येलो कलर का दिखाई--

सामने एक पोस्ट ऑफिस भी दिखाई दे रहा है इसका लोगो रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहां पे ताक डालने के लिए एक डिब्बा भी दिख रहा है।

सामने एक मार्केट दिखाई दे रही है मार्केट में बहुत सारी मिट्टी भी दिखाई दे रही है मार्केट में बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं।

और दुकान में ऊपर बहोत सारी तेल लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर--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

बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है इसका लोगो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर दीवार का कलर --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

पर एक मोटर भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे कुत्ते भी दिखाई दे रहे है।

रोड पर बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ पोल भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ पानी भी भरा हुआ दिखाई दे--